इस चित्र में हमे ना आसपास बहोत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं नीचे की तरफ --

नीचे की तरफ बहोत अंधेरा दिख रहा है कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा बिल्डिंग ये फोटो लिया गया है।

इस चित्र में पीछे नीला आसमान ऊँचे ऊँचे पहाड़ लम्बी बिल्डिंगे दिखाई दे रही हैं हरे हरे पेड़ों से बहोत सुन्दर लग रहा है।

पीछे कांच लगे हुए नज़र आ रहे हैं खिड़कियाँ जालियों की बहोत सुन्दर लग रही हैं।

इस चित्र में भी एक बड़ा एयरपोर्ट दिखाई दे रहा है बाहर की तरफ से बहोत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं छोटे छोटे पेड़ दिख रहे हैं वो बहोत सुंदर --

इस चित्र में एक बड़ी बिल्डिंग दिख रही नीचे की तरफ स्टेट बैंक इंडिया लिखा दिखाई दे रहा है एक ऑटो जाते नजर आ रहा है सामने की तरफ --

नीले रंग का आसमान नीचे बहोत सारी गाड़ियाँ खड़ी दिख रही हैं पीछे पर्पल रंग भी दिखाई दे रहा है।